एक दुकान है दुकान में दूध और दही के पैकेट रखे हुए हैं।

एक रोड है| रोड एक पूल है पूल के नीचे एक नदी दिखाई दे रही है|

एक गार्डन है गार्डन से रोड दिख रही है उस--

इसमें पीछे चक्का लगा है और वो एक किसी जीप के ऊपर रखा हुआ है|